मुझे इस तस्वीर में बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई रहे हैं जिसके सामने एक डैम सा दिखाई दे रहा है जहाँ उसके सामने --

उसके सामने कुछ कुर्सियां भी डली हुई है ग्राउंड में और हरे-हरे पत्ते भी लगे हुए दिखाई दे --

ए इस तस्वीर में एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहोत सारे थंप कोल्ड ड्रिंक --

बिल्डिंग के ऊपर दीनदयाला आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।